सामने आप देख रहे है अस्पताल है जिसमे लिखा है प्लस जनता अस्पताल और नीचे लिखा है प्लस मोहम्मद अल्फ़ा--

और इधर देखिये अ वह छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं और उत्तर देख हेडलाइट लगी हुई है तीन-चार और यहाँ पर एक देखिये सामने भी पेड़ है।

महरून रंग का पैंट किया गया है और यहां पर देखिए दोतीन --

कुछ मालें गजरे के हैं और कुछ मालें पीले रंग के हैं और ऊपर देखिए वहां पे ट्रांसफारम में से बहोत सारी तारें गई हुई हैं और नीचे कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

और उधर भी काफी भीड़ है और उधर देखिए कुछ घर हैं जोकि हरे रंग के रंग में किए गए हैं और सफेद रंग के रंग में किए गए हैं।

और ऊपर सफेद रंग का अ अगल-बगल --

पिलर है और खंबे है और इधर देखिए ख एक खंबा दिखा रहा है लाइट का और इसपे बोहोत सारे तारे गई हैं और अगल बगल बोहोत सारे पेड़ है।

ये देखिए सामने बोर्ड है जिस पर लिखा है टीटी डिजायर और यहाँ पर लिखा है --

और इसमें देखिये दो ठो शीशे का डिब्बा रखा गया है जिसमें की बिस्कुट रखी गई है और यहाँ पर देखीये कुछ आदमी बैठे हैं और कुछ खड़े हैं।

एक ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है और इधर एक ने अ --

सामने देख रहे है रेल की पटरी है और बगल मे ट्रेन भी खड़ी है और देखिए उसके अगल-बगल मे बोहोत सारे पेड़ हैं। और यहां पर --

लाइन अ लाइट लगी गई है और ऊपर देखिए बोहोत सारी तारे न् गई है खंबे से और यहाँ पर देखिए इधर घांस उगा हुआ है और इधर पत्थर अ रखे गए हैं।

दो तीन भैंसे बैठी हुई और यहाँ पर इनके --

और सब इटे की दीवारें हैं और नीचे जो फर्श जो है वो भी मिट्टी का है।